ये मंदिर जो आप देख रहे है कितना अच्छा ये महादेव की मंदिर है मै जितनी तारीफ करू इस मंदिर की ना उतनी ही कम है कितना अच्छा लग रहा है लाइट से जगमग।

देख रहे आप ये लोकैशन जितना मै तारीफ कर रहा हूँ उतना ही कम है कितना अच्छा लग रहा है ये लोकैशन बीच में पानी है कितना अच्छा लग रहा है ये पानी पानी।